हकीकत में एक लेडीज मछली ख़रीद रही है एक लेडी फोन पे बात कर रही है.

बाएं साइड में पेड़ है और बड़े-बड़े साइड से घर हैं.

है माजा रखा हुआ है अ कूलर भी रखा हुआ है टेबल भी रखा हुआ पानी का जार रखा हुआ--

हेलमेट रखा हुआ है खाना का चित्र बना हुआ है और मीनू लिखा हुआ--

और एक हेलमेट हे सोफा लगा हुआ हे बहोत सुन्दर लग रहा हे वहां सब खाना खा रहे हे.

कप का दूकान है यहां रंग बिरंगा कप रखा हुआ है.

कोई घर है घर के बाहर ट्रेन वाला--

झुला है वाला झुला है.

यह एक झील है झील पहाड़ है पहाड़ से पानी गिर रहा है पौधा है साइकिल लगा हुआ है।

और हरा कलर का पौधा हे नर्सिंरी ए पौधे के पीछे भी कुछ वाइट कलर का कुछ दिख रहा हे जेली टाइप का.

पौधा लगा हुआ है पौधा के पास एक खंभा है.

और कुछ लकड़ी का बना हुआ है बगल में और ब्लू कलर का कुछ डब्बा रखा हुआ है.

बैंक है बैंक में लड़की है एक लड़का खड़ा है बैंक में--

काला कलर का जिम का मशीन है साइकिल जिम वाला है.

एक आ सफ़ेद गाडी हे.

बाइक है स्कूटी हे वहां आदमी खड़ा है.

नौ तल्ला घर है.

ब्लैक कलर का वाइट कलर का फूल से सजा हुआ है बगल में कुर्सी है।

घड़ी के सामने सीसा मे कुछ सामान रखा हुआ हे बुक टाइप --

आह आई कार्ड रखा हुआ हे किसीका फोटो रखा हुआ हे पोस्टर बना के.